ऊपर एक पहाड़ भी हैं जो कि बहुत ही बड़े-बड़े पहाड़ हैं--

ये देख सकते है ये टेम्पो स्टेशन जो काई प्रकार के टेम्पो लगे हुए है और ढेर सारे टेम्पो --

और देख सकते हैं साइड में भी कई प्रकार के दुकाने भी हैं बैंक भी बहुत अच्छे से--

बस मे कई सवारी भी बैठे हुए है और देख सकते है इस बस को--

बहुत ही अच्छे तरह से डिज़ाइन करके बनाया गया है और देख सकते है यहाँ पर कई लोग सवारी हुए कही जा रहे है तो कहीं--